उसमे बड़े सारे पेड़ लगे हुए है।

उसमें बहुत छाले लटक रही है।

यह एक खेत है उसमें गन्ना खड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई।

उस पे पोस्टर लगा हुआ भी है।

कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं खम्बे खड़े हुए है लाइट लगी हुई है पंखा चल रहे हैं उसमें।

यह एक बाजार है उसमें बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई है।

मॉल में औरत आदमी सब कपड़े देख रहे हैं।

यहाँ तकते पटरे पड़े हुए हैं।

और शादी का माहोल चल रहा है।